नीचे लोहे का बड़ा गेट दिख रहा है गेट के बाहर एक झाड़ है झाड़ के पास में एक लाइट लगी हुई है।

नीचे एक सड़क है। सड़क के ऊपर बाइक्स है। साइकल्स है। लोग आना-जाना कर रहे --

यहाँ एक चिड़ियाँ घर है। चिड़ियाँ घर के अंदर जाली बानी हुई है। जाली के अंदर दो पक्षी दिख रहे है।

यह एक बस स्टैंड है बस स्टैंड पे नीले कलर की बस खड़ी है एक सफ़ेद कलर की खड़ी है बस --

सरिये के बीम बने हुए हैं बीम के पास में कुछ बोरियां पड़ी हुई हैं।